की ओर जिसमे काफी बड़ा सा एक घ --

इस घर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जो की एस.बी.आई. --